यह एक रोड का चित्र है।

ऊपर में बहुत सारा लाइट लगा है। ।

यह बिल्डिंग व्हाइट कलर की है ।

और यहां पर एक व्यक्ति बैठे हुए है।

पीछे में एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग भी है।

यह एक नर्सरी का चित्र है जहां पर बहुत सारे छोटे छोटे फूल लगे हुए है।

सामने मे बहुत सारा तराजू रखें हुए हैं।

अगल बगल में चारों तरफ बहुत ही बड़े बड़े पेड़ है।

यहां पर चारों तरफ व्हाइट कलर का दीवार लगाया गया है।

जिसमें वाइट कलर का लाइट लगा हुआ है।

बगल में बहोत सारे रंग बिरंगे पौधे लगे हुए हैं।

चारों तरफ रंग बिरंगे लाइट लगी हुई हैं।

यहां पर लिखा हुआ है भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रांची ।

और बहुत सारे क्रीम भी रखे हुए हैं।

बाहर में बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई रखी हुई है काले रंग की।

बच्चे ने पर्पल कलर का कपड़ा ओढ़ा हुआ है।

ऊपर से पानी गिर रहा है।

यह चित्र है कुछ क्लास रूम का है।

जहां पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए है।

यहां पर ब्लू कलर का और पीच कलर का डेस्क है।

और दो व्यक्ति बात कर रहे हैं।

और यहां पर छोटे छोटे पौधे भी है।

पीछे चारो तरफ बहोत ही बड़े बड़े पेड़ हैं और बहोत सारे छोटे पौधे भी हैं।

सामने में एक बहुत ही बड़ा डैम तालाब है।

सामने में चारों तरफ बहुत ही बड़ा बड़ा पेड़ भी है।

दो कारकरेट के ऊपर अगल बगल मे दो तीन व्यक्ति बैठे हुए है।

यहां पर एक तराजू भी रखा हुआ है।

सामने में एक ब्राउन कलर का डेस्क रखा हुआ है।